और वो विक्ट्री साईन दिखा रही है।

यहाँ पे बोहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है यहाँ फादर है सिस्टर है और बोहोत सारे लोग है।

यहां काउंटर है यहाँ येल्लो चेयर रेड चेयर है यहाँ बड़ा डोर है और यहाँ पे जिम के--

यहाँ वॉल पे स्टार दिखाई दे रहा है और यहाँ पत्थर का वॉल है।

और यहाँ पे ए_ टी_ एम् के अंदर एक आदमी दिखाई दे रहा है और वो कॅश निकलवा रहा है।

यहां पे वाइट कपड़ो में सिस्टर दिखाई दे रही है और यहां बेंचेस है।

यहाँ बोहोत सारे शेल्फ है बोहोत कपडे दिखाई दे रहे है प्लास्टिक के अंदर यहाँ एक डोर दिखाई दे रहा है।

और यहां पे लिखा है महावीर बुल्लट प्वाइंट --

ग्रीन है और यहाँ खिड़कीया दिखाई दे रही है।

और यहाँ बोहोत सारी गाड़िया दिखाई दे रही है यहाँ आसमान दिखाई दे रहा है और बहुतसारे चप्पलें दिखाई दे रही है।

यहाँ बड़े बड़े पत्ते दिखाई दे रहे है और ये छोटे हरे भरे पौदे है यहाँ लाल मिट्टी दिखाई दे रही है।

यहाँ पे एक मूर्ति दिखाई दे रही है।

ब्लू ब्लश वॉटर पार्क दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक फेस मास्क दिखाई दे रहा है जिसका नाम है गोल्ड प्लस --

और यहाँ पे शहनाज़ हुसैन का ट्वेंटी फोर --

और ये गोल्ड प्लस फेस मास्क है।

एक काउंटर है यहाँ पे बोहोत सारे चेयर्स है पोस्टर है छोटे लाइट्स है ए_ सी है और यहाँ बड़े बड़े पोस्टर्स दिखाई दे रहे है।

आसमान में बादल दिखाई दे रहे है बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे है यहाँ पे बोहोत --

पानी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ है और सब दिखाई दे रहे है।

ये एक स्ट्रीट फ़ूड की दुकान दिखाई दे रही है यहाँ बोहोत सारे अंडे दिखाई दे रहे है यहाँ पे रोल दिखाई दे रहे है।

ब्लू येल्लो टीशर्ट पहनके चपाती बना रहा है।

और यहाँ पर बडासा पेड़ दिखाई दे रहा है।